जैसा कि मुझे इस फोटो में दिख रहा है यह अंधेरा हो गया है यहाँ पे एक रैली निकल रही है जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे एक बिल्डिंग दिख रही है जो मुझे व्हाइट कलर की दिख रही हैं उसपे एक झंडा लगा जो ऑरेंज कलर का भगवा दिख रहा है।

पूल की एक दीवार दिख रही हैजो पानी की वजह से आधी खराब हो चुकी है पर आधी जो दिख रही है मुझे सफेद दिख रही है बाकी जो रेलिंग दिख रही है उसकी जो दीवाल हैजो मुझे ऑरेंज कलर की दिख रही है बहुत ही खूबसूरत--

जैसा की आप देख सकते है किसी अ... सोसाइटी का या नई दिख रहा है कोई गोदाम वोदाम का दिख रहा हैयहाँ पे मुझे फोटो है जो बारिश में पानी भरा हुआ है।

यहाँ बहोत सारी काँचे लगी हुई हैकाँचो के ऊपर गुलदस्ते रखे हुए हैंजो अलग-अलग कलर में हैं उस पर अलग-अलग फूल दिख रखे हुए हैंजो नकली देख रहे हैं प्री डेकोरेशन के लिए घर में काफी अच्छे हैंजो अच्छे तरीके से आ सकते हैयहाँ पे गोल्डन --